और शाम का वक्त हैं एक अ घरों के बअ घरों के बाहर लाइटे जल रही हैं और सामने कुछ आदमी भी खड़े हैं।

और इसके इसके अ लेफ्ट साइड पर एक लड़का बैठा है जिसने येलो कलर की शर्ट पहनी है और इस कमरे में व्हाइट कलर का पेंट किया गया और पीछे दीवार पर दो तीन --

ये पुराना सा खंडन है और ये ये बहुत ही पुराना है ये कुछ की कुछ जगह से --

काली मैदान हैं जिसमे हरी हरी घास उगी हैं और बहुत ज़्यादा दरख़्त भी हैं।

देश का झंडा लगा हैं और यहाँ पर बड़ी इमारत भी पीछे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दरख़्त भी मोझूद हैं।

खड़े हैं और कुछ अ कुछ इधर उधर सारे हैं बूड़े भी हैं बच्चे भी हैं और यहाँ पर --

ये किताबे पढ़ रहे हैं चेयर्स पर बैठे हुए हैं।

के साइड पर एक घर है और सामने इसके जो है सड़क है सड़क के सड़क के अ राइट हैंड साइड पर --

जिस के अंदर बहुत ज़्यादा भरे हैं और पीतल की बहुत ज़्यादा चीज़े पड़ी हैं यहाँ पर घर घरेलू समान कपड़े वगैरा पड़े हुए हैं और सामने एक आदमी खड़ा हैं जिसने --

ये यह रेलवे स्टेशन की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पर जंगल बिल अ स अ ब्रिज भी हैं जिस यहाँ से लोग आत --

यह एक कॉलेज हैं यहाँ पर अ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खिड़कियां वगैरा बनाई गई है इसका मैन गेट अ मैन गेट से अंदर आ कर यह वाली --

यह एक अ होटल का किचन हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये यहाँ पर ये औरतें सब्ज़िया वगैरा काट रही हैं और आदमी इनको पुकारे वहां पर --

और यहाँ पर जगा जगा छिलके बर्तन वगैरा पड़े हुए हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सब्ज़ीया वगैरा भी पड़ी हुई हैं।

ये अगरी के आसपास पांच लोग बैठे हुए हैं इनके पास लकड़ियां भी पड़ी हुई है अगरबत्तियां फूल वगैरह--

औरत अपने बच्चे के साथ बैठी हैं यहाँ पर दो लड़के भी बैठे हुए बेंचेस पर और सामने एक अ एक आदमी खड़ा हैं जो बस की बस से अ इधर आ रहा हैं और एक बस --